और ये बहुत अच्छा दिखने में भी लगता है काम बो बहुत अच्छे से करता है।

यहाँ बच्चे लोग हिंदुस्तान का तिरंगा लिए हुए है और सभी डांस सारे कर रहे हैं और बहोत अच्छा देखने में भी लग रहा है।

ये पस्तर डेयरी फार्म है यहाँ दूध मिलता है।

ये बगीचा है। इसके अगल-बगल में --